पेड़ पौधे हैं जोकि हरे भरे दिख रहे हैं।

यहां बहोत सारे आदमी दिख रहा।

सफेद कलर का कुछ इसमें ढका हुआ है।

ये कोई रूम है जिसमें दो आदमी है।

और एक स्विमिंग पुल है और एक आदमी है।

आदमी सफ़ेद कलर का कपड़ा पहना हुआ है और एक टोपी भी पहना हुआ है।

सामने एक गेट दिख रहा है जोकि ब्लैक कलर का है।

यह सफेद कलर का है एंड पीला है उसके उपर एक टंकी है।

कोई जगह है जिसमें बहुत सारे बतख हैं।

एक रूम है जिसमें तीन आदमी है और एक खिड़की है।

पीछे है बहुत सारे पेड़ है जो कि हरे भरे हैं ।